बिल्डिंग में येलो वाइट एंड ऑरेंज कत्थई कलर दिखाई दे रहा है।

खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

तकड़ी दिखाई दे रही है।

जेंट्स दिखाई दे रहा है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है।

स्कूटी दिखाई दे रही है।

जिनमें रेड एंड येलो कलर दिखाई दे रहा है।

ऊपर कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जामुन दिखाई दे रहे हैं आम दिखाई दे रहे हैं।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

जेन्स दिखाई दे रहे है। लेडीज दिखाई दे रही है।

यहाँ पर जेन्स दिखाई दे रहे हैं।